दो बैग रखा गया है जो काले रंग की है सफ़ेद रंग का दीवाल हैं।

ये जो लोग खड़े हुए हैं काले रंग के कपडे पहनें हुए है इस खम्बे की साइड पे गिफ्ट रखे गए है और सीढ़ी बनी हुई है ।

सामने कुछ छोटे-छोटे बच्चे खड़े हुए है जो खाकी वर्दी पहने हुए है एक लड़की खड़ी हुई है जो पिंक कलर के कपड़े पहनी हुई है पोस्टर लगी हुई है सफ़ेद पीले रंग की--

जो कुछ स्टेज बना हुआ है हरे रंग की ताट बीछी हुई है परदे है नीले रंग के पोस्टर लगी है कुछ लड़किया बैठी हुई है जो लाल रंग के अउ नीले रंग के साड़ी पहने हुई हैं।

पे टेबल बना है जो नीले रंग का है बहोत सारे लोग खड़े है जो ड्रॉइंग बना रहे है सामने के साइड पे दो मेडम खड़ी हुई है जो साड़ी पहनी हुई है बगल में चार कुर्सी रखी गयी है दीवाल का रंग सफ़ेद है खिड़की है जो रॉड का बना हुआ हैं।